साइड में बहुत सारा पेड़ पौधा भी लगा के रख के है।

बहुत सारा फुल पॉट भी लगा के रखा है।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

बिल्डिंग के बाहर पेड़ भी लगा के रखा है।

दूर में वायर भी दिख रहा है।

पीछे में बहुत सारे आदमी भी दिख रहा है।

मुझे इस पिक्चर में बहोत सारा आदमी औरते चेयर में बैंठ के दिख रहा है।

टेबल के ऊपर प्लेट्स भी रखा हुआ है।

साइड में टावर पोल्स भी लगा के रखा है और वायर पोल्स भी दिखाई दे रहा है।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

दूर में सफेद रंग के बादल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारा सोफा दिखाई दे रहा है।